तो पेड़ राखा हुआ है और उसके ओपॉज़िट में गार्डन किया हुआ है।

यह एक कैफे का दृश्य दिख रहा है जहाँ पे बहुत सुन्दर से डेकोरैशन किया गया है बहुत सारे बैलूनस लगाये गए हैं।

और यहां पर पे पेड़ के निचे बैठे हुए दो लड़के कुछ बात कार रहे हैं सा निचे में एटा बिछाया हुआ है।

यहाँ पे हरे-हरे अ पेड़ और छोटे-छोटे घाँस लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा सा पेड़--पहाड़ों के बीच मे एक बहुत बड़ा सा माठ है जहाँ पे छोटे-छोटे घाँस दिख रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं।